इस तस्वीर में हमें बहुत ही सुंदर जगह दिखाई दे रहा है।

और छत का रंग हरा है।

उसके पास हमें बहुत सारी की ट्रेडिशनल की चैन दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में हम एक बहुत ही सुंदर लेक देख सकते हैं जिसमें एक पहाड़ की छवि भी दिख रही है।

जो पहाड़ी इलाके जैसे लग रहा है।

रास्ते के एक तरफ एक इमारत है।

है और पी पीछे बहुत सारा पाइन ट्री है।

एक लड़का है और एक लड़की है।

अंदर एक आदमी जा रहा है अंदर तीन आदमी खड़ा हुआ है।

ऊपर में बड़ा बड़ा दो खिड़कियां हैं।

हमे एक वाटर बॉटल दिखाई दे रहा है जोकि टेबल में रखा हुआ है।

बहुत सारी बोरियां भी दिखाई दे रहा है।

हमें नीले कंटेनर भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

इस तस्वीर में हमें दो सीलिंग फैन्स दिखाइ दे रहें हैं।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है जिसमें बहुत सारा टेबल्स और चेयर्स रखा हुआ है।

और उसमें नैपकिन होल्डर के साथ नैपकिन भी रखा हुआ है पानी रखा हुआ है।

जोकि लाल और पीले रंगका है।

हमें एक हरा सा पौधा भी दिखाई दे रहा है।

और किचन के अंदर एक लड़की बैठा हुआ है उसके पीछे एक चूल्हा है।

दराज के ऊपर बहुत सारे बर्तन रखा हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत बड़ा घर दिखाया हुआ है।

बहुत सारे गमले में फूल भी रखा हुआ है।

और घर के सामने एक बड़ा सा बोर्ड है।

इस तस्वीर में हाजीपुर जंक्शन दिखाया गया है।

जंक्शन के आगे एक बड़ा सा नेशनल फ्लैग भी लगाया हुआ है।

इस तस्वीर में एक स्टूडियो दिखाया गया है जिसका नाम स्टूडियो हिडन फ्रेंड्स हाउस ऑफ आर्ट एंड फोटोग्राफी है।

और इसके दरवाजा पर ओपन लिखा हुआ है और दरवाजा के सामने एक फुट मैट भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक लाल कलर का बिल्डिंग दिखाया गया है।

किया में ग्रीन कलर का पर्दा लगाया हुआ है।

इस तस्वीर में एक बार दिखाया गया है।

भगवान का तस्वीर है और बहुत सारे दारू और कोल्ड्रिंक्स हैं।

इस तस्वीर में दीवार पर ए_सी लगाया हुआ है ए_सी के नीचे एक टी_वी रखा है।

और जमीन में कारपेट बिछाया हुआ है। उसके पास में एक टेबल है। टेबल में पियानो रखा हुआ है।

कैफ़े के बिच टेबल में एक मेनू है लाल कलर का एक बॉटल भी है।

हमें बहुत सारी चेयर्स दिखाई दे रही है और एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक हार्मनी रखा है।

जो पहाड़ों के बीच से बह रहा है।

आसमान में हल्के बादल दिख रहे हैं।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहें हैं।

तस्वीर में एक छोटा सा व्हाइट कलर का कमरा दिखाया गया है।

दीवार पर तीन तस्वीरे लगा हुआ है।

में ग्राउंड मे कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हम एक सुंदर सा कमरा देख सकते हैं।

टेबल भी दिखाई दे रहा हैं और टेबल में टिशु पेपर रखा हुआ हैं।

बिल्डिंग का रंग सफेद है हमें बहुत सारी खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

और बहुत सारी सुंदर सुंदर लाइट्स भी दिखाई दे रही है।

टेबल के ऊपर टिश्यू पेपर्स रखी हुई है।

काले रंग की दीवार में बहुत ही सुंदर फूलों का डेकोरेशन भी लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा रोड दिखाया गया है।

बहुत सारा केले का पेड़ भी है।

इस तस्वीर में हमें एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जिसका रंग हरा और सफेद है।

सामने एक दरवाजा है जो खुला हुआ है।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

बहुत सारी चेयर्स और टेबल्स भी दिख रही है जिसमें लाल रंग का कुशन लगा हुआ है।

हमें दीवार पे बहुत सारी पोस्टर्स दिखाई दे रही है।

छत पर एक ग्रे कलर का चेयर रखा हुआ है।

रूम व्हाइट और रेड कलर का --

नदी के किनारे में बहुत सारा पत्थर भी पड़ा हुआ है।

और बहुत सारा हरा भरा पेड़ पौधे भी दिखाया गया है।

हम बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे भी देख सकते है।

हम बहुत सारे पेड़ पौधे भी देख सकते हैं।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

उसके पास मे एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसका रंग हरे रंग का है।

बहुत सारी टिश्यू पेपर रखे हुए हैं सैनिटाइजर भी है और मेनू कार्ड भी है।

बैग भी दिख रहा है एक टेबल में में एक छत्री भी दिख रहा हैं।

टेबल में हमें टिश्यू पेपर्स भी दिख रहा है और सफेद रंग का प्लेट भी दिख रहा है।